यह भगवान बुध का एक मंदिर है। भगवान बुध जैसे सभी को हम लोग जानते हैं।

यह एक टूरिस्ट गाड़ी है इसमें टूरिस्ट बैठ कर के कोई फॅमिली जो टूरिस्ट रहते हैं दूर दराज आये हुए उनको लेकर के घुमाया जाता है। काफी अच्छी--

यह एल.जी का ये शोरूम है यहाँ पे सुपर एल.जी का सामान होता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टी.वी हो गया --

ये एक स्टेशनरी है स्टेशनरी दूकान है जहा पे फुटबॉल देखिये बैग देखिये बच्चो का खिलोना देखिये चाबी देखिये किताब देखिये।

इसके सामने इर्द-गिर्द कुछ औरतें डांस करती हुई ये मेला है। काफी अच्छी बात --

यह टमाटर की खेती की जा रही है टमाटर की खेती की जा रही है टमाटर का जो पौधा होता है उसमें कुछ दवाई दिया जा रहा है रसायन दिए जा रहे है ताकि कीड़े ना लगे।